ये इमेज जिनका कलर ब्लू वाइट ग्रीन डार्क ब्लू रेड लाइट ग्रीन बहुत सारे कलर के है।

बिच में परमचक्र है जो झण्डे के बीच में होता है और दो फ्लैग हमलोगो को अगल-वगल नजर आ रहे है साइड में बहुत सारे पेड़-पौधे--

व्हाट यू आर ए फील्ड दिखाई दे रहा है बहुत सारे व्यक्तियां बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं|

स्टेशन में बहुत सारे पोल्स नजर आ रहे है।

विंडो दिखाई दे रहे हैं एक स्कूल है|

यहाँ पर एक हमलोग को बहुत ही प्यारा सा मतलब पहाड़ को काट-काट के छोटा-छोटा घूमने का जगह बनाया हुआ छोटे-छोटे किले बनाये हुए है।

जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हरयाली है पेड़-पौधे है घास है बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू है।